चारो साइड से रोड है जो आते जाते है यहाँ पे टैम्पू दिखाई दे रही हैं जो दो हैं जो सायद जाम हो गई है।

हम्म यहाँ पे डांस लड़की लोग कर रहे हैं। स्टेज बनी हुई है और जो स्टेज है वो फूल से सजी हुई है। फूल का जो कलर है --